यह एक केनरा बैंक है यह बैंक में बहुत अच्छा बैंक और बड़ा बैंक है यह बैंक में बहुत सुरक्षा के साथ पैसा उठाया और जमा किया जाता है और यहाँ रोजाना बहुत आदमी आते हैं और पैसा उठाया जमा किया जाता है।

दुकान है यहाँ बहुत सारे फल मिलते हैं जैसे अंगूर बदाना सेब और भी यहाँ फल मिलते हैं यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ बहुत फ्रेश फल मिलते है यहाँ बहुत आदमी फल लेने के लिए आते भी हैं ।

यह एक सेलून का फोटो --